इसमें मेहराब और गेट दिखाई दे रहे हैं।

आइसक्रीम की लिस्ट लगी हुई है। एक औरत गेट से अंदर जा रही है। यहां बहोत से पेड़ पौधे और टेबल चेयर लगे हुए हैं।

एक पेपर के अंदर बर्गर दिखाई दे रहा है।

ऑरेंज शीटर शर्ट वाले व्यक्ति यहां पेट्रोल डाल रहे हैं।

फिक्स्ड प्राइस का एक बैनर लगा है डब्बे में साड़ियां रखी हैं।

एक सफेद कार खड़ी हैं साइड में टेबल पर एक व्यक्ती बैठा है।

उसके आस पास हरियाली और हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

बहुत सारी मोपेट और बाइसाइकल खड़ी हैं।

एक टेबल एक चेयर लगी है चेयर पर एक टॉवल डला--

यह चित्र एक जिम का दिखाई दे रहा है।

बड़ी बड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

बांस की आउटलाइन है एक बैनर पर जूगल लिखा है।

बाहर बहुत से लड़के यहां फोटो खींचते हुए दिख रहे हैं।

जहां नीचे की ओर सफेद शटर जो कि थोड़ा सा खुला हुआ है।

इसमें खाने के तीन अगल किसीम के पधात रखे हैं।

एक दुकान का दिखाई दे रहा है जहां पर बैनर पर बैकरी लिखा है बाहर एक एक्टिवा खड़ी हैं।

आस-पास दो छोटे पौधे पेकुंडियों में लगे दिख रहे हैं।

ये चित्र एक बड़ी सारी मस्जिद का दिखाई दे रहा है जो कि हरे सर्किटों से सजी हुई है।

ये चित्र एक बिल्डिंग का दिखाई दे रहा है जहाँ आसपास शेड भी डला है।

ये चित्र एक मेले का दिखाई दे रहा है जहां पर हरि हर --

क्षेत्र सोनपुर मेला दो हज़ार उन्नीस लिखा है।

एक लाल कलर की केन दिखाई दे रही है।